यह चित्र एक महाविद्यालय का है जिसपर नीला बोर्ड दिख रहा है पिली और लाल रंग की दीवारे दिख रही है।

इस चित्र में बहुत चोडा एक झरना दिखाई दे रहा है पत्थरो के बीच।

इस चित्र मे काले पत्थरों के बीच से बहता हुआ पानी दिख रहा है पत्थरों पर हरी घास दिख रही है।

इस चित्र मे एक लाल रंग की रेलगाड़ी दिख रही हे।